यह दिन के समय की फोटो दिख रही है जिसमें हम देख सकते हैं। यह बास वगैरह लगाकर का काम चल रहा है।

और ये ग्राउंड में काफी ज्यादा पेड़ पौधे लगे हुए--

इन ब्लू पेंट और पिंक कलर की टी शर्ट पहने हुए गमछा अ ओड़े हुए हैं।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

और ये जो प्ले ग्राउंड काफी बड़ा दिखाई दे रहा है ये एक--

दिखाई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

जैसा कि हम इस पिक्चर को हम देख अस्पष्ट रूप से देख सकते हैं ये एक सैलून की पिक्चर है।

इस पिक्चर में जैसा कि हम देख सकते हैं ये एक अ--

जैसा की हम देख सकते हैं ये किसी ऑफिस की वीडियो है या भी फुटेज है।

यहां पे एक पुत्तले को भी पहना के देखा गया है।